यह नीचे की ओर देख रही है। सामने ही एक टोकना दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर में एक टेबल पर कुछ सामान धरो है जैके पीछे बहौत सारे बच्चे खड़े होके टेबल में कुछ कर रहे हैं और नीचे की ओर देख रहे --

और दो बड़ी खिड़कियां भी लगी हैं| एक बहोत बड़ा गेट है| जिसके सामने एक स्कूटी खड़ी है और दो एम्बुलेंस और एक सीधी खड़ी है।

शर्ट पहन के अंदर जाय रहो। सामने एक आदमी सर से शाल ओढ़ो है नीले रंग की।

जो कत्थई से रंग की है और नदी दिख रही पानी दिख रहो | पीछे बहोत सारे मकान ओ दिख रहो ।

एक औरत एक आदमी चेयर पे बैठे हैं। आदमी सफेद शर्ट कारो पैंट पहनो जबकि औरत गुलाबी रंग को सूट --

और पीछे सफ़ेद और पीले कलर की दीवालऊ दिख रही। यह सभी गिलास एक के ऊपर एक रखे हुएं --

पीछे नदी दिख रहा है। नदी का पानी हरा है और पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ों दिख रहा --

बीच में हरे रंग का एक व्यक्ति कपड़े पेहेन कर खड़ा है जिसका एक पैर ज़मीन पर है।

जहां पर रेलवे की पटरी दिख रही तीन और पीछे प्लेटफार्म दिख रहा बिजली का बहुत बड़ा खंभा भी दिख रहा --

यह तस्वीर एक नये बन रहे मकान की है जिसमें बहुत सारे सीमेंट के खंभे हैं और उनके ऊपर लोहे की छड़ लगी हुई है।